जिस पर लिखा है उर्वशी ट्रैवल यह बस लाल और सफ़ेद कलर में है और इसकी कांच बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर खेल-कूद के उपकरण लगे हुए हैं।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

यह खंडहर काफी बड़ा है इसके सामने हमें पहाड़े भी नजर आ रही है जो काफी बड़ी बड़ी--

इस तस्वीर हमें एक वाटर पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें फ़ुलफोर्स सिक्योरिटी मान पॉवर सर्विस पी_वी_टी प्राइवेट लिमिटेड का एक शॉप दिखाई दे रहा है।